इधर एक कैफे है। कैफे बहोत बड़ा है बहोत सुंदर है। कैफे के सामने एक लड़का खड़ा है। पास में दो चेयर भी दिखाई दे रहा हैं। कैफे के अंदर --

इधर अध्ययन भी बहुत सुंदर होती है बहोत अच्छा-अच्छा टीचर्स भी इधर है।

बोहोत पुराना दिन का है इस मंदिर में रोज --

इधर एक चिल्ड्रेन्स पार्क हैं। पार्क बहोत बड़ा है। पार्क के आस-पास बहोत सुंदर है। बहोत सारे दूल्हा भी हैं। इधर रोज बहोत सारे बच्चा आफ्टरनून में घूमने आते हुऐ दिख --

एक अम्ब्रेला भी दिखाई दे रहा है। इधर रोज बोहोत सारे लोग स्विमिंग की स्विमिंग करने के लिए आती भी हैं।

इधर एक सड़क के साइड एक लोग फिश बेच रहा है। फिश बहोत बड़ा है। कुछ फिश छोटा है ताजा फिश है। एक बास्केट में भी कुछ फिश हैं।

में बहोत सारे कास्मेटिक दिखाई दे रहा है। दीवाल में फैन है। सीलिंग में बहोत सारे लाइट्स चल रहे हैं।

इधर एक स्कूल के बालकनी में बोहोत सारे स्टूडेंट बैठकर हाथों से कुछ चीज बनाती हैं। टेबल के ऊपर पेपर कटिंग है। बोहोत सारे चीजें इधर एक आ --

फूल लगा है। दूर में एक पंडाल भी दिखाई दे रहा है। इस अनुष्ठान में बहोत सारे लोग इन्वाइटेड हुवा है। चार पांच में बहोत लोगों का भीड़ हुवा है।

इदर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। रेस्टॉरंट की चार पास बहुत सारे बैलून से सजाया है। सुंदर-सुंदर लैंप सेट है। सामने चेयर टेबल में --

रेस्टॉरंट के बाहर भी कुछ लोग खड़ा है रेस्टॉरंट के सामने कुछ प्राइवेट कार खड़ा है।

इधर एक कैफे दिखाई दे रहा है। कैफे बहुत सुंदर है। कैफे के अंदर दुकानदार हीए सामने क्-अं-एक च्-गैस ओवेन में कॉफ़ी हो डहा है।

भी है बहोत सारे बच्चा इधर रोज आफ्टरनून में खे खेलने की लिए आती भी है।

सामने एक मशीन से गार्डन में पानी डल रहा है। पास ही में एक बडा-सा हाउस दिखाई दे रहा है। हाउस बहोत बड़ा है सुंदर है।

रोज ही यहाँ बहोत सारे लोग घूमने आते हैं दूर में नदी की ओर एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

दीआल की साइड में एक पलिथीन बॅग दिखाई दे रहा है इस ए.टी.एम. में रोज बहोत लोग आती है मनी भी कलेक्ट करती है।

एक बोल भी दिखाई दे रहा है। बोल में सुप है। एक स्पून है।